यह एक बागवान है यहाँ पर यहाँ एक यह बहुत सारा पेड़ लगाया जाता है फिर पेड़ लगा के उसमे पानी भी दिया जाता है और बहुत सारा गोबर उबर खाद वाद देकर उसे बड़ा किया जाता है उसके बाद उससे टमाटर फरा जाता --